एक टोटो भी खड़ा है नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

स्टर भी लगा हुआ है सीढ़ी भी है ऊपर आने का।

एक बड़ा सा मंदिर दिख रहा है जिसके बगल में एक बड़ा सा घर भी है।

पेड़ भी दिख रहे हैं मंदिर को लीची बोल से सजाया गया है।

यहां पार्क देख रहा है यहां फिसलने की बहुत सारी चीजें हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

पेड़ भी दिख रहे हैं।

दीवार का रंग ग्रीन और येलो है।

कुछ स्टीकर भी लगे हुए हैं।

एक व्यक्ति आधा दिख रहा है।

एक मंदिर दिख रहा है जो व्हाइट और गोल्डन कलर में है।

बांस भी दिख रहे हैं बना हुआ।

बहुत सारे लोग भी हैं प्रोग्राम देख रहे हैं।

एक बड़ा सा डेकची भी दिख रहा है जिसके ऊपर से रेड कलर का कपड़ा है।

बिंदी चूड़ियां भी दिख रही है।

और घास भी दिख रहे हैं।

एक खटिया भी दिख रहा है।

जिम का पोस्टर भी लगा हुआ है।

राइट साइड में ब्लू कलर का शटर लगा हुआ है।

एक व्यक्ति फोन देख रहे हैं मास्क लगाए हुए हैं।

नीचे टाइल्स लगा हुआ है बहुत सारे डोर एंड विंडो दिख रहे हैं।

एक महिला भी है और एक आदमी भी दिख रहा है।

ईटा भी दिख रहा है।

चप्पल दिख रहा है।

कपड़े भी दिख रहे हैं।

तीन बच्चे दिख रहे हैं।

मंदिर के नीचे एक सीढ़ी भी है।

दीवार में फोटो भी है जिसमें माला है।

व्हाइट और येलो से रंगा हुआ है रूम ।

मार्बल भी दिख रहे हैं।

बहुत सारे डेकोरेट किए हुए हैं फूल और लाइट से।

यह रेस्टोरेंट है यहां बहुत सारे टेबल एंड चेयर लगे हुए हैं।

दरवाजा भी दिख रहा है।

एक व्यक्ति कुछ बेच रहे हैं जो हरा कलर का तोता है।

पीछे घर है एक लाइट भी लगा हुआ है।